दिखाई दे रहे हैं उसपर ये थोड़ी दूर पहाड़ी ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

चाचों बलेड विकसेठ के फोटो दिखाई दे रही है।

छोटे बच्चे ग्राफ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और वाइट कलर का एक पन्ना दिखाई दे रहा है।

उस स्विमिंग मैं बहुत सारे स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे गाड़ियों के फोटो भी दिखाई दे रहे है।

अस्वेइंग के सामने कुछ गमले में पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ब्लैक कलर के कोट पैंट रखे हैं काफी लोग--

फोटो दिखाई दे रही है और एक पिक्कम की फोटो भी दिखाई दे रही है।

एक मंडी की फोटो दिखाई दे रही है।

आठ नंबर की टी शर्ट पहन रखी है।

उस दुकान पे कुछ देवों की वो कढ़ाई की फोटो दिखाई दे रही है।